यहां किसी की शादी है और बहोत अच्छे से सजा हुआ है ड डेकोरेशन किया हुआ है और लाइट्स वगैरा भी लगाया हुआ है यहां पे और --

और उसके अंदर एक जेंस खड़ा हुआ है। उसने एक जर्सी पहनी हुई है कुर्ता और धोती पहनी हुई है और एक स्वॅपिंग अपने कंधे पर डाली हुई है।

यहां ये यहां पे कोई शादी का फंक्शन है और कुछ फूलों से डेकोरेशन किया हुआ है इसका मेन गेट भी बहोत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है।

कुछ गि ग्रीन में चद्दर में कुछ लपटा हुआ हैं।

कमरा सा बना हुआ है और उसमें दो खिड़कियां है गाटर लगा हुआ है टीन डली हुई है और नीचे भी कुछ कच्चा है।

ये एक कम ए_टी_एम है यहां पे लोग पैसे निकाल रहे हैं दो लोग बाहर खड़े हैं ये छोटा सा ए_टी_एम है।

और दो यहां पर कांच के गेट हैं।

एक क एक पक्का रोड है उसके साइड में एक खेत है बहुत बड़ा खेत है और उसके पीछे पे कुछ--

और पीछे बहोत ज्यादा पेड़ है बहोत हरे भरे पेड़ हैं एक पार्क में है।

यहां कुछ मशीन रखी हुई है एक येलो कलर की और एक स्काई ब्लू कलर की बहोत बड़ी मशीन है यहां पे--